लिबर ऑफिस कैल्क में फ़ॉर्मूला और फंक्शन्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वगात है
इस ट्यूटोरियल में हम इनके बारे में सीखेंगे कंडिशनल ऑपरेटर इफ ऑर स्टेटमेंट बेसिक स्टैटिस्टिक फंक्शन्स संख्याओं का पूर्णन यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उबंटू लिनक्स वर्जन 1004 और लिबर ऑफिस सूट वर्ज़न 334 इस्तेमाल कर रहे हैं
हम बेसिक अरिथ्मेटिक ऑपरेटर्स लागू करना जैसे जोड़ना घटाना और डेटा का औसत निकालना पहले ही सीख चुके हैं
अब कुछ और लाभदायक ऑपरेटर्स के बारे में सीखते हैं
एक बहुत ही सामान्यतः इस्तेमाल किये जाने वाला ऑपरेटर है कंडिशनल ऑपरेटर
कंडिशनल ऑपरेटर्स उपयोगकर्ता द्वारा डेटा पर लागू कंडिशन को जाँचते हैं
और फिर उत्तर बूलियन में प्रदर्शित करता है सही या गलत
personal finance trackerओडीएस खोलते हैं
यहाँ कॉस्ट शीर्षक के नीचे हमने कई सारी वस्तुओं की कीमत को सूचीबद्ध किया है
इन पर कंडिशनल ऑपरेटर्स लागू करें और उत्तर का विश्लेषण करें
ब10 से उल्लिखित सेल पर क्लिक करें और इसके अंदर कंडीशन रिजल्ट टाइप करें
अब सी10 से उल्लिखित सेल पर क्लिक करें
कंडिशन का उत्तर इस सेल में लागू होगा और प्रदर्शित होगा
ध्यान दें हाउस रेंट का खर्च 6000 रुपया है
इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्च 800 रुपया है
हाउस रेंट का खर्च इलेक्ट्रिसिटी बिल से अधिक है
हम इन पर विभिन्न कंडिशन्स को लागू कर सकते हैं और उत्तर जाँच सकते हैं
सी10 से उल्लिखित सेल पर क्लिक करें
इस सेल में पहली कंडिशन टाइप करें इस इक्वल टो सी3 ग्रेटर थान सी4 और Enter बटन दबाएँ
चूँकि सेल सी3 की वैल्यू सेल सी4 से अधिक है उत्तर हम ट्रू पायेंगे
अब इस कंडिशनल स्टेटमेंट को इस इक्वल टो सी3 लेस थान सी4 में बदल देते हैं
Enter दबाएँ
हमें उत्तर फलसे मिलता है
इसी प्रकार से आप अन्य कंडिशनल स्टेटमेंट्स को लागू कर सकते हैं और उत्तर जाँच सकते हैं
यह स्टेटमेंट्स बहुत ही लाभदायक होते हैं जब ढेर सारे डेटा के साथ कार्य कर रहे हों
कंडिशन के अनुसार जो सही है वो उत्तर प्रिंट करवाने के लिए आप डेटा पर इफ और ओर कंडिशन इस्तेमाल कर सकते हैं
सी10 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें और टाइप करें इस इक्वल टो इफ और कोष्टकों के अंदर सी3 ग्रेटर थान सी4 कौमा दोहरे उद्धरण चिह्नों के अंदर पॉजिटिव कौमा और फिर से दोहरे उद्धरण चिह्नों के अंदर नेगेटिव
इसका मतलब यदि सेल सी3 की वैल्यू सेल सी4 से अधिक है तो पॉजिटिव प्रदर्शित होगा
या अन्यथा नेगेटिव प्रदर्शित होगा
अब Enter दबाएँ
ध्यान दें कि उत्तर पॉजिटिव है क्योंकि रूपये 6000 रूपये 800 से अधिक हैं
अब कंडिशन स्टेटमेंट में चलिए ग्रेटर थान को लेस थान में बदलते हैं और Enter की दबाएँ
ध्यान दें कि उत्तर अब नेगेटिव है क्योंकि सेल सी3 की वैल्यू सेल सी4 की वैल्य से अधिक है
यदि हम सेल्स सी3 और सी4 का डेटा बदलें तो आप बदलाव को उत्तर में भी देख सकते हैं
उत्तर अब नेगेटिव प्रदर्शित होता है
अब सेल सी4 की वैल्यू की 7000 तक बढ़ा दें और Enter की दबाएँ
उत्तर खुद ही पॉजिटिव में बदल जाता है
फिर से सेल सी4 की वैल्यू को 800 तक घटाएँ
और Enter की दबाएँ
उत्तर फिर से खुद नेगेटिव में बदल जाता है
अब बदलावों को डिलीट करते हैं
आगे कुछ अरिथ्मेटिक और स्टैटिस्टिक फंक्शन्स सीखते हैं
बेसिक अरिथ्मेटिक फंक्शन्स सम्मिलित करते हैं जोड़ने के लिए सुम गुणा के लिए प्रोडक्ट भाग के लिए क्वोटिएंट और कई सारे जिन्हें हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में पहले ही सीख लिया है
अब सुम प्रोडक्ट और क्वोटिएंट फंक्शन्स कैसे काम करते हैं यह जाँचने के लिए कुछ ऑपरेशन्स करते हैं
सबसे पहले शीट 3 चुनें
ब1 ब2 और ब3 से उल्लिखित सेलों के अंदर 50100 और 150 की संख्या क्रमशः प्रविष्ट करें
सेल आ4 पर क्लिक करें और सुम टाइप करें
सेल ब4 पर क्लिक करें
हम इस सेल में उत्तर की गणना करेंगे
इस इक्वल टो सुम और कोष्ठकों के अंदर ब1 कौमा ब2 कौमा ब3 टाइप करें
एंटर दबाएँ
ध्यान दें उत्तर 300 दर्शा रहा है
आप इसी प्रकार से सेल्स के विभिन्न प्रकार भी प्रविष्ट कर सकते हैं
ब4 पर फिर से क्लिक करें
अब कोष्ठकों के अंदर ब1 कौमा ब2 कौमा ब3 के बजाय ब1 कॉलन ब3 टाइप करें
एंटर दबाएँ
फिर से उत्तर 300 प्रदर्शित होता है
अब सेल आ5 पर क्लिक करें और प्रोडक्ट टाइप करें
सेल ब5 पर क्लिक करें
यहाँ इस इक्वल टो प्रोडक्ट और कोष्ठकों के अंदर ब1 कॉलन ब3 टाइप करें
एंटर दबाएँ
ध्यान दें कि उत्तर 750000 प्रदर्शित होता है
अब देखते हैं कि क्वोटिएंट कैसे काम करता है
आ6 से उल्लिखित सेल पर क्लिक करें और क्वोटिएंट टाइप करें
अब सेल ब6 पर क्लिक करें
हम उत्तर की गणना करने के लिए इस सेल का उपयोग करेंगे
और इस इक्वल टो क्वोटिएंट और कोष्टकों के अंदर ब2 कौमा ब1 टाइप करें
एंटर दबाएँ
आपको उत्तर 2 मिलेगा
ऐसा इसलिए क्योंकि 100 भाग 50 2 देता है
इसी तरह कैल्क में हम कई प्रकार के अरिथ्मेटिक ऑपरेशन्स कर सकते हैं
अब सीखते हैं कि स्टैटिस्टिक फंक्शन्स का कार्यान्वन कैसे करें
स्टैटिस्टिक फंक्शन्स स्प्रैडशीट में डेटा विश्लेषण के लिए लाभदायक होते हैं
उदाहरणस्वरुप फंक्शन्स जैसे काउंट मिन मैक्स मीडियन मोडे और भी बहुतों का प्रकार स्टैटिस्टिकल होता है
सबसे पहले शीट 1 पर क्लिक करें
देखते हैं कि कैसे स्टैटिस्टिकल फंक्शन्स का इस्तेमाल करके न्यूनतमअधिकतम और मध्य मूल पता करते हैं
सी10 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें जहाँ हम उत्तर दर्शाएँगे
कॉस्ट शीर्षक के अंदर हमारे पास बहुत कम प्रविष्टियाँ हैं
न्यूनतम कीमत 300 रूपये है
अधिकतम कीमत 6000 रूपये है
यह उत्तर हैं जो कि प्रदर्शित होने चाहिए जब हम उनके फंक्शन्स इस्तेमाल करते हैं
सेल सी10 में इस इक्वल टो मैक्स और कोष्ठकों के अंदर सी3 कॉलन सी7 टाइप करें
अब एंटर की दबाएँ
ध्यान दें कि उत्तर 6000 है जोकि कॉलम में अधिकतम वैल्यू है
अब स्टेटमेंट में शब्द मैक्स को मिन से बदलें
और Enter की दबाएँ
ध्यान दें कि उत्तर 300 है जोकि कॉस्ट कॉलम में न्यूनतम वैल्यू है
मध्य वैल्यू निकलने के लिए शब्द मिन को मीडियन से बदलें
और Enter की दबाएँ
उत्तर 800 प्रदर्शित होता है जोकि कॉलम में मध्य कीमत है
इसी प्रकार से आप डेटा पर अन्य स्टैटिस्टिकल फंक्शन्स इस्तेमाल कर सकते हैं और तदनुसार विश्लेषण कर सकते हैं
इस सेल में बदलावों को डिलीट करें
अब सीखते हैं कि संख्याओं का पूर्णन कैसे करें
कॉस्ट शीर्षक के अंदर कुछ बदलाव करते हैं
हम 6000 को 600034 600 को 6004 300 को 3003 में बदलेंगे
अब ब11 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें शीर्षक राउंडिंग ओफ टाइप करें
सी11 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें जहाँ हम शीर्षक कॉस्ट के अंदर की चीज़ों का जोड़ निकालेंगे
सेल सी11 में इस इक्वल टो सुम और कोष्ठकों के अंदर सी3 कॉलन सी7 टाइप करें
अब एंटर की दबाएँ
ध्यान दें कि कुल मिलाकर 970104 है
अब मान लीजिये हम हमारे उत्तर में कोई भी दशमलव स्थान नहीं देखना चाहते
कुल संख्या 970104 वाले सेल पर क्लिक करें
टाइप करें इस इक्वल टो राउंड कोष्ठक खोलें सुम और फिर से कोष्ठकों के अंदर सी3 कॉलन सी7
कोष्ठक बंद करें
एंटर की दबाएँ
आप देखते हैं कि उत्तर अब 9701 है जोकि 970104 के नजदीकी पूर्ण संख्या के आसपास है
राउंडिंग ऑफ़ निचली पूर्ण संख्या या तो ऊपरी पूर्ण संख्या पर कर सकते हैं
उत्तर के साथ सेल पर क्लिक करें और शब्द राउंड को बदल कर राउंडअप करें
अब Enter की दबाएँ
आप देखते हैं कि उत्तर अब 9702 जोकि ऊपरी पूर्ण संख्या है
निचली पूर्ण संख्या पर राउंड ऑफ़ करने के लिए राउंडअप शब्द को राउंडाउन में बदलें
और एंटर की दबाएँ
उत्तर अब 9701 है जोकि निचली पूर्ण संख्या है
अपनी personal finance trackerओडीएस को उसके असली रूप में पाने के लिए इन बदलावों को अन्डू करें
इसी के साथ हम लिबर ऑफिस कैल्क पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षेप में हमने इनके बारे में सीखा कंडिशनल ऑपरेटर इफऑर स्टेटमेंटifओर स्टेटमेंट बेसिक स्टैटिस्टिक फंक्शन्स संख्याओं का पूर्णन निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर संपर्क करें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
भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद